यहाँ पर अमरूद का पेड़ है। जंगल वंगल है घास वास लगा हुआ है। सब अच्छा लग रहा है।

कोई दिक्कत नहीं अच्छा दुकान है।

स्कूल से बच्चा घर जा रहे हैं।

टीचर सब ज्ञान देते है अच्छा लगते हैं सब बच्चा के पढ़ा लिखा के गाड़ी बढ़ाते हैं देश सुधारे के लिए --

एक बहुत बड़ा मकान है इ त टॉवर उवर लगा हुआ है एगो ठेला है ठेला पर लड़का ठड़ा हुआ है।

खूब मोटर साइकिल मोटर साइकिल का तीन गो चार गो मोटर साइकिल लगा हुआ है खूब अच्छा मकान है घर हैं फूल पौधा के पेड़ ल --

ढंग से बाजार लगा हुआ है खूब सुंदर लग रहा है।